इस पोखरे में लोग नहाकर इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं और इस मंदिर में बोहोत ही भीड़ लगी हुई रहती है।

इन औरतों के सामने पर बोहोत सारे थालियां रखी गयी हैं और ये एक दूसरे को खाना खिला रही हैं। यहाँ पे बोहोत सारे लोग आये हुए हैं।